इस तस्वीर में देखो मालूम पड़ रहा है कि किसी छत का ढलाई हुआ है बहुत सारे मजदूर हैं और छत में पानी पटाने का काम --

क्रिसमस ट्री है और बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं स्नोमेन भी बनाया गया है।

अ जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स बैठकर लंच कर रहे हैं डिनर कर रहे हैं।

और ग्रीन कलर का चेयर इसमें लगा हुआ है और डेकोरेशन काफी शानदार है ऊपर इसमें लाइट्स लगी हुई हैं।

ये तस्वीर किसी पार्क का है पार्क में एक तार का पेड़ है और चारों साइड से बहोत सारे बिल्डिंग्स हैं।

और तस्वीर में जो पार्क दिख रहा है उसकी जो ग्रासेस हैं बहुत ही साफ कटिंग की हुई है।

मुझे लगता है कि यह किसी सोसाइटी के पार्क का चित्र इसमें दिख रहा है।

और तस्वीर में जो दिख रहा है व्हाइट कलर का बिल्डिंग उस पे कुछ डस्ट भी लगी हुई है।

अ पावभाजी जी जैसा कुछ डिश है।

फैन लगा हुआ है और नीचे में कुछ --

पलंग या सोफा जैसा कुछ बना के रखा हुआ है।

यह तस्वीर में बहुत सारे बच्चे शायद एग्जाम या टेस्ट दे रहे हैं क्योंकि कुछ पेज से देखकर एक नोट्स में लिख रहे हैं।

हे जो बच्चों को गाइड कर रही हैं।

जो टीचर के द्वारा गाइड करके प्रोजेक्ट बना रही है।

और एक व्यक्ति जो है ट्राउजर और चप्पल में है जो कार की ओर बढ़ रहा है और दूसरा व्यक्ति कार में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है और एक --

यह तस्वीर किसी ट्रॉली का है इसमें दोनों साइड तीन-तीन चोंगा लगा हुआ है और बीच में--

स्पीकर लगा हुआ है।

यह तस्वीर किसी कैफे का हो सकता है।

सामान दिख रहा है जैसे हैंड वॉश रखा हुआ है।

यह तस्वीर किसी सैलून के ओपनिंग का है क्योंकि पीछे में हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सैलून का बोर्ड लगा हुआ है।

गोल्डन और ब्लैक कलर का बैनर लगा हुआ है।

हल्का-हल्का धूप है और आसमान में हल्का हल्का बादल भी दिखाई पड़ रहा है।

यह तस्वीर पटना आकाशवाणी का है मतलब रेडियो सेंटर का है रेडियो स्टेशन का--

और इसके सामने में दो लड़कियां खड़ी हैं और एक स्कूटी पार्क किया हुआ है।

दो गाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं जो पेट्रोल पंप से जा रही हैं और पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग भी है।

मुझे लगता है कि यह तस्वीर इरिटेड है क्योंकि आसमान का कलर --

दो तीन छात्र खड़े हैं और कुछ छात्र बैठे हुए हैं।

और किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है।

क्योंकि स्टेज के जो चारों तरफ है उसमें फूल लगाने का काम किया जा रहा है।

घर काफी शानदार है मार्बल फ्लोर लगा हुआ है और इसमें--

और ऊपर में फंखा लगा हुआ है तीन चार--

यह तस्वीर किसी बार्बर शॉप का है जहाँ एक व्यक्ति कस्टमर बैठकर अपना बीयर्स बनवा रहा है।

इसका जो वॉल का कलर और पर्दे का कलर है वो ब्लैक कलर का है।

यह तस्वीर किसी गराज का हो सकता है।

कर के कोई शॉप है जो रेड कलर का है हालांकि--

जिसमें एक व्यक्ति ग्रीन पैंट और व्हाइट टी- शर्ट पहनकर--

अ नैपकिन रखे हुए हैं और टेबल के साइड में चेयर्स लगे हुए हैं।

यह फोटो चितकोरा बाजार के एक शॉप का है।

यह तस्वीर एक पार्क का है और पार्क में--

बहुत सारे चेयर दिये गये हैं बैठने के लिए--

के लिए पाइप लगाया गया है जिससे मालूम पड़ रहा है कि पानी अभी भी पौधों में पटाया गया है।

लेकिन दिक्कत वाली बात है कि अब तस्वीर एडिटेड है।

इस किले के सामने से एक स्कूटी आ रही है।

बेडशीट भी का कलर भी व्हाइट है हालांकि दीवार का कलर --

गोदरेज इंटरियो करके नाम है और व्हाइट कलर के पट्टी पे और ब्लैक कलर से गोदरेज इंटरियो लिखा हुआ है।

गुमटी के आगे नाला है और जहाँ से एक व्यक्ति हाथ में बुक लेकर क्रॉस कर रहा है।

और गुमटी बंद है और गुमटी के बगल में दो व्यक्ति बैठकर कुछ सोच रहे हैं।

से बनाया हुआ है इस कैफे में एक ए_सी भी लगा हुआ है हालांकि सारे लाइट्स बंद हैं।

और जो बहुत ही हाइजीन मेंटेन किया हुआ है क्योंकि बहुत साफ सफाई दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी गली का है जिसमें साइड में--

नाला है और एक साइड में साइकिल और मोटरसाइकिल पार्क किए हुए हैं।

इस गली से एक ठेला वाला अपना ठेला लेकर गुजर रहा है।

कुछ महिलाएं वहाँ पे बैठकर बात कर रही हैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जहाँ पे येलो और ब्लैक कलर का टायर रखा हुआ है और दो टेबल रखे हुये हैं एक टेबल पे माजा के बोतल रखा हुआ है --

और मशीनस लगे हुए बहुत सारा हालांकि कोई--

यूज नहीं कर रहा मतलब अभी इसमें कोई वर्कर नहीं है मतलब काम नहीं कर रहा।

किसी पार्किंग का हो सकता है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई है।

ये तस्वीर किसी कार मैकेनिक का है क्योंकि एक व्यक्ति जो है कार को बोनट को ओपन करके कुछ रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि कार को सीकर के सहायता से ऊपर उठाया गया है।

और कार में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसको काम किया जा रहा है इसमें--

और एक व्यक्ति खड़ा हो के जन गन मन गाना आ रहा है।

हमको मालूम नहीं चल रहा है लेकिन कुछ तो गा रहा है कान में कुछ तो लगाए हुए है।